जहा बाहर जनरेटर लगा हुआ है और ए_टी_एम की सुविधा उपलब्ध है।

और साइड में पानी का काडा है।